यहां एक औरत खड़ी हुई है।

दो ए_टी_एम का बोर्ड बि नीले रंग का दिखाई दे रहा है।

इसका कवर भी इसके पास में रखा हुआ है।

यह एक किताब की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां कुछ व्यक्ति आ जा रहे है।

सामने लाल रंग का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एयरपोर्ट सांगानेर लिखा हुआ है।

यहां पर लाल रंग के सोफे बिछे हुए हैं।